यह दृश्य एक प्रिंटिंग शॉप का है सामने की तरफ एक प्रिंट दिखाई दे रहा है।

रोड पे पानी भी गिरा हुआ है यहां पे कई सारे गाड़ियां दिखाई दे रही हैं।

सामने की तरफ एक दुकान दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर मोटर्स वर्कशॉप रंका लिखा हुआ है उसमें कई सारी गाड़ी की भी चित्र है।

दोनों ही दुकानों का शटर लगा हुआ है सामने वाला दुकान के अंदर बहुत सारे झूले अलग अलग सामान रखें हुए हैं।

पीछे के तरफ बहोत सारे टबिनेंट भी दिखाई दे रहे हैं जिनसे पानी निकल रहा है।

यह दृश्य एक किचन का है इसमें कई सारे ड्रॉवर्स बने हुए हैं हर एक ड्रॉवर्स के अंदर वाइट रंग का कुछ लगा हुआ है।

यह एक दृश्य रेस्टोरेंट का है सामने की तरफ बहुत सारे चेयर्स और टेबल दिखाई दे रहे हैं सभी पर आदमी बैठे हुए हैं।

ऊपर की तरफ लाइट्स लगे हुए हैं।

नीचे की तरफ बेड शीट दिखाई दे रही है।

यह दृश्य एक दुकान का है यहां पे कई सारे लोहे और स्टील के समान दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर की तरफ एक पोस्टर लगा हुआ है बगल में दीवार में भी कुछ लिखा हुआ है।

नीचे की तरफ पानी गिरा हुआ है सामने की तरफ और भी दो ट्रक दिखाई दे रहे हैं।

उपर की तरफ एक ब्लू रंग का पैकेट है इसके अंदर भी सब्जी रखी हुई है।

सामने की तरफ दो हाथे भी दिखाई दे रही है।

यहां पे नीचे की तरफ और भी कई सारे सब्जियां फेंकी हुई है।

आगे के तरफ एक और शटर दिखाई दे रही है वो शटर भी लगा ही हुआ है।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

शीशे से रिफ्लैक्ट होकर एक चेयर दिखाई दे रहा है।

सामने की तरफ खिरकी दिखाई दे रही है सामने की तरफ टाइल्स भी दिखाई दे रही है।

सामने की तरफ रास्ता भी दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ एक बल्ब भी दिखाई दे रहा है।

आगे की तरफ एक घंटी दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य एक फैक्ट्री का है सामने के तरफ बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

कुछ के दूरी पे बालू भी है ऊपर की तरफ खपरा दिखाई दे रहा है।

पीछे की तरफ एक आदमी भी दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ एक पोस्टर भी लगा हुआ है जिसके ऊपर दो आदमी के पोस्टर लगे हुए हैं।

दूर की तरह जमीन दिखाई दे रही है यहां पर छोटे मोटे घास भी उगे हुए हैं।

यह दृश्य एक दुकान का है सामने के तरफ कई सारे ड्रावर्स बने हुए हैं हर एक ड्रावर्स के अंदर दवाई रखे हुए हैं।

पीछे की तरफ दीवार दिखाई दे रही है दीवार के ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है।

यह दृश्य एक पेट्रोल पंप का है नीचे की तरफ जमीन दिखाई दे रही है।

यह दृश्य एक दुकान का है सामने की तरफ तीन चार बच्चे दिखाई दे रहे है।

पीछे की तरफ एक और रूम दिखाई दे रहा है।